तो जैसा की आप--

बहोत बड़ी मार्केट में--

सकते हैं यहां पर इस--

तो जैसा कि आप देख सकते हैं।

तो जैसा कि आप इस--

हैं यहां पर एक बहोत बड़ी बिल्डिंग है।

तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर--

और यहां पर बहोत सारी चीजें--

तो जैसा कि आप देख--

हैं और यहां पर--